और जिसमें अ और साइड में एक और मूर्ति रखी हुई है।

और कुछ छोटी-छोटी कला कृति बनी हुई है आ आकृतियाँ बनी हुई है।